ट्राउजर पहना हुआ दिख रहा है।

यह इमेज में हमें एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि अपने बालों को कटाते हुए नज़र आ रही है। वह लड़की के बालों पे बोहोत सी लाल रंग की क्लिपें लगी हुई हैं तथा वो काँच के सामने बैठी है।

टीशर्ट में हमें एक आदमीं खड़ा दिख रहा है। जो कि पीले कलर की टीशर्ट पहना हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे फुलों की बोरी भी दिख रही है।

यह इमेज में हमें एक बड़ी सी बस दिख रही है जो कि लाल कलर की नजर आ रही है। वो बस बोहोत बड़ी है तथा उसके अंदर से हमें बोहोत से लोगुन उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये इमेज में हमें बहोत बड़ा स्कूल दिख रहा है जिसके सामने हमें झंडा वन्दन होते हुए दिखाई दे रहा है।

वहाॅं पर हमें ऊपर झंडा लगा दिख रहा है तथा वहाॅं पर एक आदमी रंगोली बना रहा है वहाॅं पर एक आदमी सेलूट करते हुए नजर आ रहा है।